उसके ही बराबर में एक अ मोर का मोर बना हुआ है और बहोत सारे फूल और घारल लगी है।

यस ये साइकिल की दुकान का शॉप की मशीन है और यहां पे बहती सारी साइकिल खड़ी है।

ये एक शॉप की दुकान है और यहां पर अह कुछ उम्म कुछ लोग जो हैं सामान खरीद रहे हैं बहुत मतलब इसमें भीड़ है।

कुछ तो जूट के कट्टे रखे हैं एक प्लास्टिक का कट्टा है और कुछ आटे के या चावल के कट्टे है अ एक के ऊपर एक रखे --

ये किसी मोमेंटम का सीन है और यहां पर पूरी दिवाले रेड कलर से पूती हुई हैं और--

अ व्हाइट कलर से पेंट हो रखा है उसके ऊपर ब्लू कलर से मोमेंटम लिखा हुआ है।

ऑरेंज व्हाईट और ग्रीन कलर के बलून लगे हुए हैं चारों तरफ।

लाल पीली हरी सफेद और चारों तरफ पेड़ है इसमें और नीचे अंधेरा है ऊपर बहोत लाइटे है और सड़क लगी हुई है पेड़ पौधे बहोत है घास भी लगी है।

ये किसी गेट का सीन है और अ अंदर चारों तरफ दीवार है पूरा ग्राउंड खाली है यहां पे।

और एक के गले में जयमाला पड फूलों की माला है और इधर की तरफ गुलाबी रंग का वो बना है स्टेज और उसपे भी फूल लगे हुए है।

बोर्ड लगा है उसपे वाइट कलर का गोलीयां टावर लिखा है और यहां पे ग्रीन कलर के शीशे लगे हुए हैं और ये बिल्डिंग है।

ये योगा क्लासेस लगी हुई है यहां पर बहुत सारे जेंस हैं जो योगा कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और ट्रक भी खड़ा हुआ है और यहां छत भी है और पेड़ पौधे हैं बोहोत सारी बाइकें और स्कूटी है ये सब खड़ी है यहां पर--

यहां सोफे लगे हुए हैं यहां पर और उसपे कुशन भी रखा है और चेयर भी लगी हुई है।

ये बहोत बड़ा ग्राउंड है और यहां पर बहोत सारे कुत्ते हैं और जो चारों तरफ वहां पे जाल भी लगा हुआ है।

कुछ खंबे खड़े है उसपे ही चाल जाल बांधा है और कम से कम सात आठ कुत्ते है और उनके खाने का भी एक डोंगा पड़ा है पीने के पानी पड़ा हुआ है।

ये किसी छत का सीन है और यहां पर एक बहुत बड़ी छत है जिसमें नेट लगा हुआ है और--

ये घोड़ा का अस्तबल है और यहां पर बहोत सारे घोड़े हैं एक दो तीन चार पांच छे सात आठ--

और बहुत सुंदर झालर लगी हुई है बल्फ लाइटें लगी हुई हैं यहां पर।

ये पुराने किले का अ सीन हैं और यहाँ पर बहोत पुराने किले किला किले की दीवारें हैं यहाँ पर--

यह प्ले स्कूल का सीन है और यहां पर बहोत से बच्चे बैठे हुए हैं जो कलरफुल ड्रेस में आए हुए हैं बैठे हुए हैं और--

और अ एलीफेंट फूल बने हुए है बोर्ड है व मैडम उसपे पढ़ा रही हैं बोर्ड पे कुछ लिख रही है।

यहां पे फूलों की दुकान है और यहां पर लाफिंग बुद्धा है बहोत सारे टॉयज रखे हुए हैं खिलौने रखें मिट्टी के--

और यहां तो है अम्म मूर्तियां भी रखी है साईं बाबा हैं और बहुत अच्छे-अच्छे फूल लगे हुए हैं यहां पे और गेंदे है।

हां और यहां पर एक आदमी भी खड़ा है और कुछ जो है यहां पर खरीद रहे हैं और लेडिज अंदर दुकान से आ रहीं--

और उनके ऊपर माला लगी चढ़ी हुई है और एक लेडीज हैं और एक यहां पे जेंट्स हैं जो लेटे हुए हैं।